इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपनी रूचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें
इसके लिए अपने परिचित उदाहरण डेटाबेस को देखते हैं
पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि रिपोर्ट कैसे बनाएँ
और हमने रिपोर्ट बुक्स इश्यूड टो Members रिपोर्ट हिस्टोरी शीर्षक के साथ बनाई थी
अब हम सीखेंगे कि इस रिपोर्ट में बदलाव कैसे करें
लाइब्रेरी डेटाबेस में बाएँ पैनल पर रिपोर्ट्स आइकन पर क्लिक करें
दायें पैनल पर हम रिपोर्ट्स सूची में बुक्स इश्यूड टो Members रिपोर्ट हिस्टोरी रिपोर्ट देख सकते हैं
इस पर दायाँ क्लिक करें और फिर रिपोर्ट को बदलने या सम्पादन करने के लिए एडिट पर क्लिक करें
अब हम रिपोर्ट बिल्डर नामक एक नई विंडो देखते हैं
इस स्क्रीन में तीन मुख्य भाग हैं
पेज हेडर और फूटर भाग जो कि ऊपर और नीचे को बनाता है
फिर हेडर भाग है
और फिर डिटेल भाग है
हम रिकॉर्ड हेडर और फूटर भाग भी जोड़ सकते हैं
सफेद क्षेत्र में मुख्य स्क्रीन पर दायाँ क्लिक करके और इंसर्ट रिपोर्ट headerफूटर पर क्लिक करके
हम स्क्रीन के बायीं तरफ नारंगी रंग के क्षेत्र पर डबल क्लिक करके इन भागों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं
हमारे आगे बढ़ने से पहले यहाँ रिपोर्ट डिजाइन विंडो का स्क्रीनशॉट है
हम अपनी रिपोर्ट के डिजाइन को इस तरह से दिखने के लिए रूपान्तर करेंगे
हम कुछ टेक्स्ट लेबल्स फ़ॉन्ट्स जोड़ेंगे तथा विभिन्न भागों के स्पेस की फॉर्मेटिंग और समायोजन करेंगे
ठीक है अब कुछ रिपोर्ट हेडर्स और फुटर्स जोड़ते हैं
यह करने के लिए हम लाबेल फील्ड आइकन पर क्लिक करेंगे
रिपोर्ट में कंट्रोल्स टूलबार सबसे ऊपर मेन्यू बार के नीचे पाया जाता है
चलिए इसे रिपोर्ट हेडर क्षेत्र में बनाते हैं जैसा कि अभी दर्शित हो रहा है
और इसकी विशेषताओं को दायीं तरफ लाने के लिए लाबेल पर डबल क्लिक करें
यहाँ लाबेल के सामने टाइप करते हैं बुक्स इश्यूड टो Members रिपोर्ट हिस्टोरी और Enter दबाते हैं
चलिए फोंट स्टाइल भी बदलते हैं हम एरियल ब्लैक चुनेंगे बोल्ड और साइज़ 12 और ओक बटन पर क्लिक करते हैं
आगे जैसा स्क्रीन पर दिखाया है वैसा रिपोर्ट फूटर पर एक और लाबेल जोड़ते हैं
उदाहरणस्वरुप चलिए रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाय असिस्टेंट लाइब्रेरियन टाइप करते हैं
और फिर फोंट स्टाइल को एरियल बोल्ड इटालिक और साइज 8में बदलें
अब पेज फूटर क्षेत्र में लेबल जोड़ने के लिए हम वही स्टेप्स को दोहराएँगे
इस बार हम लाबेल के सामने टाइप करेंगे नेहरू लाइब्रेरी न्यू देल्ही
और फोंट स्टाइल को एरियल में बदलें और साइज 8
अब खाली स्थान को सुधारते हैं
पहले पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके पेज हेडर क्षेत्र को कम करते हैं
और हम इसे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप तरीके से सबसे ऊपर ले जाएँगे

अगला रिपोर्ट हेडर और हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके रिपोर्ट हेडर क्षेत्र को कम करते हैं
रिपोर्ट फूटर और पेज फूटर के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए भी हम इसी तरीके को दोहराएँगे
अगला हेडर लेबल्स को बीच में करते हैं
हम यह बुक टाइटल पर क्लिक करके पहले सभी लेबल्स को चुनकर करेंगे
और फिर जब Shift बटन दबाते हैं हम दिखाई दे रहे बाकी लेबल्स पर क्लिक करेंगे
अब इनको मध्य में लाने लिए अप एरो बटन का इस्तेमाल करें
हम अब हेडर को हल्का नीला प्रष्ठभूमि देंगे
यह करने के लिए हम प्रॉपर्टीज पर जाएँगे और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट को नो में बदल देंगे
और फिर लिस्ट से बैकग्राउंड कलर के लिए ब्लू 8 चुनें
हम यही डिटेल भाग के लिए भी करेंगे
इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल और रिपोर्ट फूटर भागों के स्पेस को बढ़ाएँगे
और फिर फील्ड्स को मध्य में लाएँ
हम डिटेल भाग के लिए हल्का स्लेटी बैकग्राउंड चुनेंगे जैसा दिखाया गया है
आगे चेक्ड इन फील्ड के लिए हम डेटा फॉरमेटिंग बदलेंगे
चूँकि यह बूलियन वेल्युस 1 या 0 रखता है यह ट्रू या फलसे दर्शाता है
हम इसे अनुकूल येस या नो विकल्प दिखाने के लिए बदलेंगे
इसके लिए हम डिटेल भाग में दायीं तरफ पर चेकडिन फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे
अब दायीं तरफ प्रॉपर्टीज पर पहले दाता टैब पर क्लिक करें
दाता फील्ड के बगल में बटन पर क्लिक करें जो चेकडिन है
यह फंक्शन विजार्ड नामक एक नई पॉपअप विंडो खोलता है
यहाँ पहले नीचे दायीं तरफ फॉर्मुला टेक्स्ट बॉक्स खाली करें
फिर कैटेगरी ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और फिर इफ पर डबल क्लिक करें
अब दायीं तरफ हम नये संचालन देखते हैं
अब पहले टेक्स्ट बॉक्स के दायीं तरफ सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करें
यहाँ हम चेकिन पर डबल क्लिक करेंगे
अब हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दोहरे उद्धरण चिह्नों में येस टाइप करेंगे
और फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में नो टाइप करें
अब हम प्रॉपर्टीज भाग में जनरल टैब पर जाएँगे
और नीचे फॉर्मेटिंग के सामने बटन पर क्लिक करें
यहाँ हम कैटेगरी सूची में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
और अब हम रिपोर्ट सेव करेंगे
ठीक है अब अपनी परिवर्तित रिपोर्ट को रन करते हैं
इसके लिए हम सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर एक्जीक्यूट रिपोर्ट पर क्लिक करें
और यहाँ लाइब्रेरी सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों का हमारा सूक्ष्म विवरण है
स्पेसिंग हेडर्स फूटर्स फ़ॉन्ट्स पर ध्यान दीजिये
और चेकडिन फील्ड पर ध्यान दीजिये जो येस या नो दर्शाता है
और हमने अपनी रिपोर्ट में बदलाव कर लिए हैं
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर रिपोर्ट में बदलावों के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि अपनी रूचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद